बहुत सारे व्यक्ति दिख रहे आते-जाते और एक बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा सामने की साइड और खुला-खुला आसमान दिख रहा है ऊपर की साइड --

और बहुत सारे लोग बैठे हुए है इस कुर्सियों पर और सामने के साइड में बहोत सारे लोग खड़े हुए है।

यहाँ पर सामने एक बुक सेंटर दिख रहा है और एक पंखा दिख रहा है ब्लैक कलर का।